इस चित्र में हमें जंगल की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा हैं चारों तरफ पेड़-पौधे लगे हुई हैं बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं धूल भरे रास्ते हैं।

सामने की तरफ से आती हुई बड़ी-बड़ी खिड़कियों से सूरज की रोशनी दिखाई देती है फर्श साफ औ-और सुंदर दिखाई देता है।

वह कलमा दिखाई दे रहा है और एक बड़ी सी मेराब दिख रही है और एक इलेक्ट्रोनिक घड़ी भी नजर आ रही है।

इस चित्र में हमे सार्थक फाउंडेशन के द्वारा छोटे गरीब बच्चों के शिक्षा देते शिक्षक नजर आ रहे है।

इस चित्र में हमे कुछ मजदूरो के द्वारा एक बड़ी मशीन के जरिये कुछ सामान का वजन करते दिखाई दे रहे है।